यहाँ पे एस.बी.आई. का ए.टी.एम. है और हम लोग आते हैं ए.टी.एम. में पैसा उठा उठाते हैं और काफी ज्यादा अच्छे और ज्यादा आसान होते हैं और बहुत --